ये एक बुक स्टोर का फोटो है जहाँ एक भैया बैठे है और सामने एक और एक झन भैया अपना मुह ढक के---

ऊपर नीचे ऊपर नीचे करके रखा गया है एक सीडी भी है एक स्टूल पड़ा हुआ है एक झन भैया खड़े है जो सफेद कलर का शर्ट ब्लैक कलर का पेंट पहने है।

एक बड़ा सा अ नाव रखने वाला जो लोहा रहता है वो सामने खड़ा है और पीछे एक नदी है।

उसके अ सामने एक जन इन न न इंजीनियर एक तार को काटते हुए देखा जा सकता हैं वो सफेद कलर का टोपी पहने हैं और हाथ में भी ग्लोवस पहने हैं।

और उनको देखने के लिए दो मैडम भी खड़े है द--दोनों साइड पे दीवार भी है दीवार है नीचे लाल कलर का कलर दिया गया है।